यहाँ पे मंच के ऊपर एक बोहुत ही प्यारी नृत्य और नृत्यिका खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर किसी ने लाल किसी ने हरी किसी ने नीली किसी ने पीली कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह गोल्डन रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है तथा यहाँ पर आस पास काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तो दूसरा मंदिर महाबलि हनुमान मंदिर है।